यह पहाड़ी सड़क है। यहाँ चारो तरफ से हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। यहाँ जगह-जगह पर लाइटे लगी हुई है। यह देखने में बहुत आकर्षक लगता है।

कछुआ पानी में रहता है।

यह बहुत ही खूंखार होता है।

ये मानव की बोली का नक़ल भी करते हैं।